इस तस्वीर में हमें एक मॉल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत कम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और स्टेशन पर छतरी भी लगी है जिस पर लाइटें लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में हमें गौतम बुद्ध का टेंपल दिखाई दे रहा है।

यह पानी काफी गहरा है और काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।